ग्राउंड के अंदर कुछ खेल चल रहा है।

और आसमान है आसमान सफेद रंग का है।

दो कुर्सियां है कुर्सियां कत्थई रंग की है।

इस चित्र में हमें एक स्टेज नजर आ रहा है स्टेज में लाल रंग के पर्दे हैं।

रंगे पर्दों की सजावट है और लाल और सफेद फूल है।

स्टेज के बाहर एक आदमी खड़ा है आदमी सफेद रंग की शर्ट पेहना है और काले रंग का पैंट पेहना है।

इस चित्र में हमें एक मॉल दिखाई दे रहा है मॉल में एक कॉफी शॉप है कॉफी शॉप के बाहर कॉफी वर्ड लिखा हुआ है एक लकड़ी की टेबल है।

मस्जिद का दरवाजा काले रंग का है मस्जिद के बाहर बिजली का खंभा है।

और ग्राउंड पास के पास आस-पास पीली दीवारें हैं ग्राउंड में कुछ पेड़ हैं ग्राउंड के बाहर कुछ पेड़ हैं सामने एक गमला है।

ऊपर आसमान है आसपास कुछ पेड़ हैं।

और कांच की टेबल है अंदर कुछ लोग खड़े हैं बाहर लाइटे लगे हैं लाइटे सफेद रंग की है शॉप के बाहर एक आदमी है।

आदमी काले रंग की शर्ट पहना है ऊपर एक सफेद रंग का ए_सी है।

चित्र में हमें एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के बाहर एक लाल रंग का बोर्ड है उसके ऊपर मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है।

दुकान के बाहर सफेद रंग की बोरियां हैं और बोरे हैं।

चित्र में हमें एक सड़क नजर आ रही है सड़क के साइड में एक मैरिज वेन्यू है मैरिज वेन्यू पे--

गैरेज के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है। एक बाइक है। बाइक काले रंग की है और कुछ लोग हैं।

एक लड़का एक्सरसाइज रहा है वे--

ग्रे रंग की टी-शर्ट और काले रंग की लोवर पहना है उसके पीछे एक लड़का खड़ा है।

बाहर एक आदमी खड़ा है वो काले रंग की टी-शर्ट --

जिसके ऊपर दी भोपाल लाइब्रेरी लिखा है।

एक टेबल के ऊपर कुछ दवाइयां और रूई के पैकेट रखे हैं।

इस चित्र में हमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है एक आदमी खड़ा है।

इस चित्र में हमें एक सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है सफेद रंग की बिल्डिंग के सामने एक दरवाजा है।

एक के ऊपर एक गुंबद बना है साइड में एक स्कूल है सफेद रंग का उसके बाहर गुरु नानक पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है।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

आसमान है एक काले रंग का तार है।

घास है पत्थर है एक हरे रंग की नेट है।